यहां पर बिल्डिंग के जो उपर की साइड की कलर है वो लाल रंग से रंगी हुई है।

इस इमेज में एक दुकान को दिखाया गया है जो कि चाट दुकान है।

इसके ऊपर बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

उसके अगल बगल में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

बाहर साइड में रेती और बालू गिरा हुआ है।

जो कि यहां पर एक गाड़ी सफेद रंग की लग कर वॉश हो रही हैं।

और उसके बाहर साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

उसके बीच में एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा खड़ा है।

उसके अगल बगल में बहुत सारी दवाइयां रखी गई है टेबल के ऊपर।

बिल्डिंग का कलर पीले रंग से रंगा गया है और उसके साइड साइड में लाइनिंग लाल कलर से की गई है।

अंदर में कुछ आदमी और एक औरत खड़ी है।

यहां पर बड़ी बड़ी होल्डिंग भी लगाई हुई है।

पीछे साइड में व्हाइट कलर के बल्ब लगाई गई है।

यहां पर लाल और पीले कलर की बैलून से गेट बनाई गई है।

और उस पार्क के पीछे एक बड़ी सी वृक्ष है।

और उसके सामने मे एक बड़ी सी वृक्ष लगाई गई है।

और उसके पीछे एक बड़ी सी वृक्ष लगी हुई है।

उनके मैदान की पीछे साइड में एक बड़ी सी पेड़ है।

काले और पीले और सफेद अक्षरों में उसमें कुछ बनाया गया हैं।

और इस रथ में दो तीन मूर्ति भी हैं।

जो कि मैदान के अगल बगल में बहोत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

रिंग के बाहर साइड में कुछ गाड़ियां भी लगी हुई है।

जो की पोल्ट्री फार्म की जो छत पर है बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

और यहां पर और पो फॉर्म के अंदर बहुत सारी मुर्गियां रखी हुई हैं।